एक व्यक्ति ने नीली शर्ट और काला पेंट पहन कर बैठा हुआ हैं जो मछली बेच रहा हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जिसमें दो बस दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक प्रशाशनिक कार्यालय दिख रहा है। एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। लाल कलर की एक छत दिखाई दे रही है।

कुछ पत्थरों कीं चट्टानें दिख रही हैं। एक दो पेड़ दिख रहे हैं और ऊपर नीला आसमान दिख रहा हैं।